इसमें कई सारे फर्नीचर्स एवं बच्चे बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं।

इसमें कई तरह के कम्प्यूटर्स लगे हुए दिखाई दे रहे हैं।

एक घड़ी नज़र आ रही है।

छोटे-छोटे पत्थरें भी दिखाई दे रहे हैं।

कुछ इलेक्ट्रिक पोल्स भी नज़र आ रहे हैं।

लकड़ी से बने कुछ फर्नीचर्स भी नजर आ रहे हैं।

इस चित्र में एक सालोन दिखाई दे रहा है।

लकड़ी से बने फर्नीचर्स भी दिखाई दे रहे हैं।

एक पंखा और एक लाइट भी दिखाई दे रहा है।